यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ पानी नजर आ रहा है झरना।

ग्रीन कलर ब्लैक कलर दिख रहा है कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं।

ब्लैक कलर की अलमारिया रखी हुई है। यहाँ ऊपर टाइस टाइल्स भी लगी हुई है।